इस इमेज में एक रोड है।

रूम ब्लू कलर की दीवार का है।

ए_सी लगा है एक टेबल लगा है।

इस इमेज में एक रूम है रूम में गद्दे बिछे हैं।

घर के बाहर दो ऑटो खड़े हैं एक गाय खड़ी है।

इस इमेज में एक शॉप है।

इस इमेज में एक खेत है।

टेबल कुर्सी रखी है।

लोग दिख रहे हैं।

इस इमेज में एक--

इस इमेज में एक रूम है।

पेड़ पौधे लगे हैं ब्लैक पाइप है कार खड़ी है।

बाहर फूल का मोर है।

शॉप में एक आदमी खड़ा है आदमी--

इस इमेज में एक घर है।

वाइट लाइट है पीछे एक बिल्डिंग है।